यहाँ एक भाई साहब बैठे हुए है जिन्होंने लाल कलर की शर्ट --

जिसका बोर्ड वाइट और रेड कलर से बनाया गया है।

जिस पिक्चर में हमें गंभीर ड्राई क्लीनरस नाम की एक दुकान दिखाई दे रही है।

गैराज के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे सिंह लिखा हुआ है।

और जो लोग खड़े हुए नजर आ रहें हैं वो मछली के खरीदार जैसे प्रतीत हो रहें हैं और ये लोग मछलियों की खरीदारी करने इस मार्केट में आये हुए हैं।

इस पिक्चर में हमें फूलो की दुकान नजर आ रही है जहां बहोत ही सुन्दर-सुन्दर फूल रखे हुए हैं जिसमे हमें --

इस पिक्चर में हमें एक फलो की रैली नजर आ रही है इस रैली में हमें काफी सारे फल नजर आ रहे है जिसमे मोसम्मी हमें नजर आ रही है।

ये एक सैलून की दुकान नजर आ रही है जिसके बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट कलर की टी-शर्ट --

यह पिक्चर एक मोटर गाराज की तरह नजर आ रही है।